ये पार्क का है जिसमें बा बहोत सारे अ--

जालियां लगी हुई है जालियों के पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

राष्ट्रगान लिखा हुआ है बहोत सारे फल और--

कोई पानी पी रहे है। पानी की टंकी रखी हुई है। एक स्कूटी रखी हुई हैं उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है दो औरतें--